पेड़ और ग्रास का साथ --

लड्डू समोसा और अलग अलग चीजें --

और ये जूस भी है और अन्दर में अलग अलग सामानों है ऊपर में लाइट जला हुआ है।

भी है और एक आदमी बैठ के दिखाई पा रहे --

और एक बाइसइकल भी दिखाई पा रहें--

एक गाड़ी भी है उसके आगे में।

और एक फ्लैग कपड़ा ला सफेद वाला भी दिखाई पा रहे।

हैंगर में लटकाया हुआ है और अलग तरह तरह का कपड़ा सा है।

यहां एक पत्ता वाला घर दिखाई दे रहे हैं उसके सामने भी दो है।

एक आदमी बाइसिकल के ऊपर बैठा हुआ है।

ऊपर में लाइट जल के है और फैन भी दिखाई पड़ रहे हैं।

बाहर पे ब्लैंकेट सब भी रखा हुआ है और अंदर में लाइट भी जला हुआ है।

सामने में फूल से सजाया हुआ है।

आसमान में पुरा ब्ल्यू ब्लू कलर सा दिखाई दे रहा है।

यहां एक स्विमिंग पूल दिखाई पा रहे उसके सामने चंग घर जैसा वाला बनाया हुआ है।

एक कार भी दिखाई रहे--

यो पत्थर का ऊपर पानी भी निकाल के है।

मूनलाइट भी दिखाई दे रहे हैं पहाड़ का ऊपर।